ये एक स्वीमिंग पूल है। ये स्वीमिंग पूल देखने में तो बहोत ही सुंदर है और यहां पे कुछ लोग औरत बच्चे और जेन्स लेडिस सब लोग नहा भी रहे हैं।

यह इस पे एक आदमी भी यहाँं से दिखाई पड़ रहा है और इसके पड़ोस में भी कूड़ा वगेरा भी नदी के पड़ोस में पड़ा ये पड़ाड़ है। पहाड़ पे बहुत ज्यादा पेड़-पौधे भी यहाँं से दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है।

ये एक समुंद्र है। ये समुंद्र देखने में बहोत बड़ा है और बहोत सुंदर है। इसमें बहोत पक्षी बड़े हैं छोटे भी कुछ हैं। कुछ नहा भी रहे हैं। कुछ उड़ भी रहे हैं और कुछ यहाँं पे तैर भी रहे हैं। यहाँं --

पंकज बुक डिपो जैसा लिखा हुआ है ये दुकान है। इसकी दुकान के अंदर कुछ बिक रहा है फेविकोल पे यहां जो साफ नजर आ रहा है। इस दुकान में --

पूरा पड़ा है उसके पड़ोस में पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ से और थोड़ी दूर पे ही गाँव है | गाँव के कुछ घर भी दिखाई यहाँ से --

एक यह नदी है नदी देखने में बहुत बड़ी है यहाँ से सूरज उगता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे नाव भी बहुत ज्यादा खड़ बनी हुई पड़ी हुई इस नदी में है।

और आगे पोस्टर भी लगा हुआ है कुछ बैंक की वजह से जोड़ी गई है ये दुकान ये चौराहे पे और यहाँ पे कुछ कूड़ा भी बहोत ज्यादा पड़ा हुआ है।

यहाँ पे एंगल भी कुछ बने हुए हैं। यहाँ पे घर भी बने हुए हैं। यहाँ पे उसमें विंडो भी बहोत ज्यादा लगी हुई। जनम भी दिखाई यहाँ से पड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक दो लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे --